आगे एक स्कूटर खड़ा हुआ है जो काले व सफेद कलर का दिखाई दे रहा हैं पीछे एक नदी जैसा कुछ दिखाई दे रहा है जिसमे कुछ नावे दिखाई दे रही है उसके बगल मे भी एक बड़ा-सा भी पुल दिखाई दे रहा है पीछे कुछ हरे-हरे वृक्ष देखे जा सकते हैं।

यहां पर कुछ लड़के लड़कियां दिखाई दे रही हैं बगल मे दो लड़का दो दो लड़के बैठे हुए तथा झंडा लिए हुए है पीछे भी एक लड़की बैठी हुई है जो गिटार ली हुई है।

यहां पे एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दे रहा है जो बैगनी कलर का शर्ट पहना हुआ हैं तथा उसका बटन सफेद कलर का लगे हुए है उसके हाथ में कुछ बांधे हुए हैं।

यहाँ पे कुछ लड़के लड़कियाँ दिखाई दे रही हैं ल अ लड़की अ सफ़ेद कलर का फ्रॉक पेहनी हुई तथा पिंक कलर की अ फ्रॉक भी पेहनी हुई है पीछे कुछ --